यह अंदर इसके अंदर लाइट जलती हुई नज़र आ रही है।

खड़ी हुई नज़र आ रही है और अपनी है ज़ भी लगा रखी है।

और यहाँ पर पारक भी लगा रखे है भारत गेट के ऊपर और गेट भी लगा रखे है बढ़िया-बढ़िया--

और उसका मेन गेट है यह नीले रंग का बनाया गया है अंदर --

एक रोड है रोड के ऊपर आने जाने वाले --